तालाब के पास तीन गायें दिखाई दे रही है।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

एक खेलने के लिए पिचकारी दिखाई दे रही है।

और वे पानी में कूदने के लिए तैयार हैं।

एक जिम दिखाई दे रही है।

जिनका रंग नीला और हरा है।